जिम करते हुए रेड कलर की टी शर्ट में ब्लैक टी शर्ट में --.

भूपेश बुक डिपो लोकवाणी केंद्र जनसेवा केंद्र दिख रहा है में टेबल दिख रही है काउंटर दिख रहे है।

और पास में एक छोटा सा घर दिख रहा है लकड़ी से बना हुआ दिख रहा है।